मंदिर में बोहोत ही ज्यादा कारीगरी दिखाई गई है।

यहां पर घूमने जाने में बड़ा मज़ा आएगा। बड़ी ही अच्छी जगह है अच्छा लग भी रहा है देखने में।

इसमें फूल पत्ती और भी बहोत तरह की चीजों का काम हैं। यह देखने में बहोत ही अच्छा लग रहा है।

और कमल की डिज़ाइन भी बनी है। जिस पर मिनारें लगी हुई हैं। सामने एक काले रंग की मूर्ति रखी है।

यह कहीं पर स्टैचू जैसा बना हुआ है। यह बुद्धदेव की मूर्ति लग रही है। जोकि अपने स्थान पर ग्रहण है।

यह एक पुरानी मंदिर लग रही है| इसके पास --